ये एक गार्डन का बड़ा सारा पिक्चर दिखाई दे रहा है।

ये एक म्यूजियम की फोटो दिख रही है जहां पर बड़ी सारी एक अलमारी है।

ये एक जिम का दृश्य है जिसमें काफी सारी ट्रेडमिल दिखाई दे रही हैं।

जमीन पर कत्थर कत्थई कलर की फ्लोरिंग करी हुई है यहां पर काफी सारी लाइट दी --

इस चित्र में एक एंट्रेंस गेट के बाहर खड़ा हुआ लड़का अपना फोटो ले रहा है।

यहां जमीन पर घास लगी दिख रही है बड़ा सारा हरा पेड़ दिख रहा है।

ये फोटो एक जिम का है इसमें एक व्यक्ति--

यहां पे काफी सारी चेयर्स टेबल रखी हैं जिस पर खाना पानी की बोतलें टिश्यू बैग सारे दिखाई दे रहे हैं।

काफी सारे लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं टेबलों पे चेयर पे बैठे हुए यहाँ खाना लिया जा रहा है यहाँ बहुत सारी भीड़ एकत्रित है।

जो कि सफेद प्लास्टिक से पैक है नीचे एक लाल कलर का वाटर कूलर दिखाई दे रहा है बड़े-बड़े डले दिखाई दे रहे हैं।

ये बड़ा सारा तालाब है तालाब के गेट भी खुले हुए दिखाई दे रहे है जो अंडरब्रिज है जिसपे ब्रिज पे जाने का रास्ता है।

उसने हमने सर पे डिजाइन दलवाया हुआ है बालों का नाइस से--

और बहुत सारी औरतें यहां पर एकत्रित हैं जो अलग-अलग--

बिछा हुआ हरे कलर का कालीन दिखाई दे रहा है ये कोकाकोला की मशीन यहां पर रखे हुए हैं।

पास में एक व्यक्ति खड़ा है सीढ़ियों से जाता हुआ एक रास्ता है।

यहां पे बड़े-बड़े स्टेम लगे हुए हैं आसपास बाउंडरी हैं।

बाउंड्री के बाहर काफी सारे गेट लगे हैं शायद ये शौचालय हैं आसपास काफी सारी--

और काफी डेकोरेटेड है ये यहां पे फूल--

बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि सफेद कलर की पुती हुई है उसमें खूबसूरत खिड़वियां दिख रही है।

इस चित्र में किसी सर्विस स्टेशन की दुकान दिखाई दे रही है।

लाल कलर के यहां पे पडदे दिख रहे हैं जमीन कट्टे कलर की--

इनके पीचे बड़ी की बड़ी सारी क्रीम कलर की दीवारें उसके ऊपर एक --

जिस पे बड़ा सारा बेड है बेड पे सफेद कलर की बेडशीट सफेद कलर के तकिए दिख रहे हैं।

ये सर्दियों का फोटो है क्योंकि लेडीज ने सफेद स्वेटर पहन रखा है.